इस पिक्चर में एक ग्राउंड दिख रहा है जिसमें एक डॉग डॉग है और एक टीन शेड में एक फॉर व्हीलर --